अभी जो अपार्टमेंट दिखाए जा रहा है वो द्वारका अपार्टमेंट है और ये अपार्टमेंट बहुत ही बड़िया है।

अभी जो पिक्चर हमे शो हो रही है वो अंचलेश्वर मंदिर की है जो चंद्रपूर जिल्हे मे अंचलेश्वर गेट की तरफ स्थित हैं।

ये जो पिक्चर हमे दिखाई जा रही है ये चंद्रपुर जिल्हे के अंचलेश्वर मंदिर के पिछे स्थित है जो की एक समादी है।

की ब्रांच दिखाई जा रही है जो की चंद्रपूर मे है और उसके ही बाजू मे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ए_टी_एम भी स्थित है।

जो फोटो जिस स्क्रीन पर दिख रही है वो शायद से एक मुस्लिम स्कूल का लग रहा है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ बहुत सारे लड़कों को समझा रहा है और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे है।